गमले वगैरा भी रखे हुए जाल भी पड़ा हुआ दिखाई दे रहा है |

भी दिखाई दे रही है ये कुछ सीढ़ियां भी बनी हुई दिखाई दे रही है |

बाइट है और यहाँ पे एक लोहे का गेट लगा हुआ है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है |

यहाँ एक मूर्ति बनी हुई दिखाई दे रही है और कुछ फूल लगे हुए दिखाई दे रहे हैं जिनका कलर वाइट येलो और पिंक है।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

और कुछ पोस्टर भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे एक लोहे का गेट भी दिखाई दे रहा है और बाइक भी रखी हुई दिखाई दे रही है।